इसके बाहर में एक ट्रांसफार्मर है यह ट्रांसफार्मरस में यह इससे लाइन दिया है फैक्ट्री में ।

देखने में बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर दो-दो लड़का ही अपने-अपने सेल्फी ले रहे --

यह रोड बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर बहुत ही आगे पेड़-पौधे लगे --